यहाँ सामने कई सारे हुक्के लाइन से रखे नज़र आ रहे हैं।

यहां पर्दे के नीचे टेंपो खड़े हुए नजर आ रहे हैं तथा रिक्शा भी खड़ा हुआ--

यहां सामने मोटरसाइकिल भी खड़ी नजर आ रही है।

यहां काफी सारे लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं व एक व्यक्ति खड़ा नजर आ रहा है।

यहां आसमान का कलर सफेद दिखाई दे रहा है।

यहां सामने एक गेट दिखाई दे रहा है जो कि काले कलर का है।

चारों तरफ बाउंड्री है जो कि सफेद और ग्रे कलर की है।

तीन डिब्बे रखे हुए नजर आ रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है गोल्ड पीलस ।

यहां की दिवाले क्रीम कलर की है यहां की जमीन सफेद कलर की है।

जोकि एक के ऊपर एक रक्खा हुआ है।

यहां की दीवाले पीली व सफेद कलर की दिखाई दे रही हैं।

यहां कई सारी महिलाएं खड़ी हुई नजर आ रही हैं जो की पिंक लाल ब्लू व ग्रीन कलर की साड़ी पहने हुए हैं।

यहां सामने एक चर्च की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहां के लोग सफेद ब्लू ब्लैक कलर के कपड़े पहने खड़े दिखाई दे रहे --

यहाँ सामने कई सारे लोग खड़े नजर आ रहे हैं।

का है यहां साइकिल भी दिखाई दे रही है जिसके पास एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है।

यहां की दिवालें व्हाइट कलर की दिखाई दे रही हैं।

सामने एक चैनल भी दिखाई दे रहा है जो कि ब्राउन कलर का है।

यहां सामने कई सारी बिल्डिंगे भी दिखाई दे रही हैं।

यहां बिल्डिगो का कलर पीला व्हाइट व ऑरेंज दिखाई दे रहा--

यहां की दिवालें स्काई ब्लू व व्हाइट कलर की दिखाई दे रही हैं।

यह एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम अरहन्त भोजनालय है।